यह हमें बहोत सारा लकड़ी का कुछ सामान लोहे का सामान दिखाई दे रहा है।

जंगल में एवंम इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ देख रहा है।

और कुछ लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

व्हाइट कलर की बिल्डिंग नजर आ रही है।

बिल्डिंग पर बहोत सारे कपड़े सुखते हुए नजर आ रहे हैं।

उसमें क्या पता कुछ बॉक्सेस में सामान रखा हुआ दिख रहा है।

दीवाल पर कुछ लटका हुआ दिख रहा हैं।

जो बेंचेज पर कुछ वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं।

कुर्सी पर बहोत सारे लोग बैठे हुए नजर आ रहे--

सामने एक दुकान दिखाई दे रही है।

झाड़ उधर झोपडी नजर जा रही है।

इसके अलावा हमें बहोत सारे कपबोर्ड लगे हुए दिख रहे हैं।

और काउंटर पर ऑयल्स की बॉटले रखी हुई दिख रही हैं।

खिड़कियां दरवाजे नजर आ रहे हैं।

एक दीवाल पर कुछ लगा हुआ दिख रहा है।

एक बोर्ड दिखाई दे रहा है फिटनेस जिम का--

दूर हमें बहोत सारी बिल्डिंगे नजर आ रही है।

ग्राउंड में बहोत सारी घासे लगी हुई दिख रही है।

यहां हमें एक सफेद कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

वहा हमें एक बड़ी प्लेट दिखाई दे रही है।

यहां हमें एक चर्च का सिन दिखाई दे रहा है।

लाल कलर का कारपेट बिछा हुआ दिख रहा है।

यहां पर हमें मछली मार्केट दिखाई दे रहा है।